यहाँ पर ढेर सारी बाइक्स दिखाई दे रही है कुछ लोग दिखाई दे रहे है बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

एक ब्लू कलर का शटर दिखाई दे रहा है। ब्लैक कलर का गेट दिखाई दे रहा है।

फूलों की मालाएं दिखाई दे रही है बैलून्स दिखाई दे रहे है।

कार दिखाई दे रही है। वाइट कलर की जीप --

यह एक मंच दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं।

एक सीढी दिखाई दे रही है। कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

एण्ड पीछे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

व्हाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है। ईंटों की दीवालें दिखाई दे रही हैं। कुछ कपड़े दिखाई दे --

वाइट कलर की दीवाल दिखाई दे रही है।

रेड कलर की कारपेट दिखाई दे रही है।